एक कार है और कार ते बाहर कई सारियां जेरीये कारा मोटरसाइकिला लग्या ही है कारा व्हाइट कलर दी लइया गयीं हैं।

इथे एक गार्डन है फ्लावर्स वाला और कई सारे इथे जेलो रंग दे फ्लावर लगे हुएं हैं।

एक पिंक कलर दा गाउन है एक रेड कलर दा एक ऑरेंज और एक पिंक ।

पोस्टर लग गया ओदी ऊपर लिखिये--

सजावट कित्ती हुई है ईत्थ सारी फ्लावर्स लगाए हुई है।

स्कूल है स्कूल दे बाहर कई सारे पोस्टर लगाए हुए हैं अंबेडकर और माता दी पिक लगाई है।